और दीवार पर एक फैन भी लगाया गया है।

एक बड़ा शीशा भी लगा हुआ है कुछ सामान भी रखे हुए--

इसमें कई सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

फोटो थोड़ा काला दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक सड़क की है।

ये तस्वीर एक माता रानी की मूर्ति की है यहां पर एक तंबू लगा है।

यहां बहोत सारी लाइटें लगी हैं।

रूम में सोफा डाला गया है एक छोटा टेबल भी रखा है।

यहां पर बहोत बड़ी इमारत है जिसमें बहोत सारी खिड़कियां है।

इसमें ए_टी_एम मशीन दिखाई दे रही है।

बहोत सारे पुतले रखे हैं जिनको नई ड्रेसें --

और एक बड़ा बोर्ड रोड के साइड में लगा हुआ है।

ये तस्वीर एक शॉप की है शॉप --

और यहां घड़ा भी लगा हुआ--

और यहां टीन भी डाली गई हैं।

एक पीले रंग का बोर्ड है जिस पर सेफ जूस लिखा है।

और सड़क पर बहोत सारी मट्टी पड़ी है कचरा पड़ा है।

पीले रंग की बस खड़ी हुई हैं और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं।

इसे मालाओं से सजाकर रखा गया।

ये तस्वीर एक मैदान की है मैदान में बहोत सारे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं।

और यहां बहोत सारे सामग्री हैं फलों टोकरिया हैं।

तस्वीर बहुत सारे टमाटरों की है ये टमाटर ताजा हैं।

बहुत सारी डोलें दिख रही हैं।

बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं और यहां--